और जो ये बन रहा और ये दुकान बंद है छोटी-छोटी घांसे भी दिख रही है और पोस्टर लगे हुए हैं और आसमान दिख रहें हैं काफी अच्छा लग --

यहाँ पे बहुत सारे लोग है एक प्लेट दिख रही है।

बहुत ही अच्छा लग रहा है देख कर शानदार नज़ारा।